लड़के हैं उपर एक नीला बड़ा पोस्टर लगा हुआ है जिसमें उपर जय श्री राम--

खिड़कियां और गेट दिख रहे हैं बाहर सफेद कलर से--

गमले राखे हुए हैं जिनमे बोहत से पौधे--

सफेद कलर की हैं जिसमें सफेद बहोत सारी खिड़कियां दिख रही हैं और सामने कुछ आदमी--

लगे हुए हैं ऊपर सफेद और नीला आसमान दिख रहा है।

और नीचे काले कलर की सड़क दिख रही है इस पर पीले पत्ते दिख रहे हैं और कार के ऊपर भी पीले--

सामने एक टेबिल दिख रही है जो और जिसके ऊपर--

फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ है और एक कांच का बॉक्स रखा है पीछे दीवार क्रीम कलर की है जिसमें तनिष्क --

खाने का पोस्टर लगा हुआ है जिसमें बहोत सी डिशे छपी हुई है और साइड में ऊपर दीवाल पर ए_सी दिख रहा है।

नली हुई है जिन पर लड़के लड़कियाँ बैठी हुई है जो कुछ नीले कुछ सफेद ड्रेस --

लगे हुए हैं ऊपर छत में लाल पीले और काले कलर की तीन तीन बहुत सारे फुग्गे लगे हुए हैं।

ऊपर नीला अह ब्लैक एंड व्हाइट और हरा आसमान दिख रहा है।

पड़ी हुई है और दो आदमी दिखाई दे रही है और--

कांच के गेट लगे हुए हैं और अंदर रैक बने हैं जिसमें गले के--

सामने एक बिल्डिंग दिख रही है जो सफेद कलर की है जिसमें बीच में--

काले कलर का बोर्ड लगा है जिसमें ले लें लेमन तड़का लिखा हुआ है नीचे एक--

सामने बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है जिसमें नीचे पीली घास दिखाई दे रही है और सामने--

कुछ सूट दिख रहे हैं साइड में कपड़ों के बॉक्स रखे हुए हैं जो रंगीन--

सामने एक दिवाल दिख रही है जिसका ऊपर सफेद कलर है नीचे--

सामने एक टेबल दिख रहीं हैं जिसके ऊपर एक कंप्यूटर रखा हुवा हैं जिस पर ऊपर--

गूगल पे का पोस्टर लगा हुआ है और टेबल --

बना हुआ है जिसमे ऊपर चॉकलेट रखी हुई है और सामने दीवाल सफेद कलर की है जिस पर--